किसी दुकान का है।

अच्छी बेगन भी खड़ी है।

सब्जी की दुकान लगी है।

फील्ड की लग रही है।

बहोत सारे लोग भी खड़े हैं।

ये फोटो किसी मार्ट का--

किसी बदतमीज लड़के ने--